मुझे एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है एक जो है शिप दिख रही है उसके ऊपर दो लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं।

ये जो हैं डांस कर रहे हैं लड़की ऊपर जो है डेकोरेशन हुआ हुआ है।

यहां कुछ लोग दिख रहे हैं साइड में कुछ पेड़ दिख रहे हैं एक अंकल खड़े हुए हैं साइड मे कुछ नाव जैसी कश्‍ती जैसी दिख रही है।

काफी सारे जो है पेड़ दिख रहे हैं ऊपर आसमान दिख रहा है।

काफी सारे जो है पेड़ दिख रहे हैं कुछ घर दिख रहे हैं।

ऊपर जो है आसमान दिख रहा है काफी सारे पेड़ दिख रहे है घने-घने।

ये जो है एक मंदिर दिख रहा है उसमे जो है ये काफी सारे लोग दिख रहे हैं।

ओर साइड मे जो है उसकी घास-वास दिख रही है कुछ लोग ऊपर चड़ते हुवे दिख रहे है

इसमें जो है वी विशाल मेगा मार्ट है | ऊपर जो है आसमान दिख रहा है और कॉम्प्लेक्स में में जो है काफी सारी जो है शॉपस दिख रही है काँच का बना हुआ दिख रहा है काफी सारी जो है बाइकस दिख रही है।

ये जो है मस्जिद जैसी बनी हुई दिख रही है व्हाइट कलर की मस्जिद दिख रही है साइड मे जो एक छोटा सा हल्का सा नाजुक सा पेड़ दिख रहा है ऊपर जो है आसमान दिख रहा है नीचे जो है घाँस जैसी ज़मीन दिख रही है।